बच्चे अपना प्रोजेक्ट बना रहे है जिसका अगल-बगल दीवार भी है और यहां पर लोग काम भी कर रहे है।